सब कुछ दिखाया हुआ देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे राशन दुकान भी हैं।

ये लोग मुखिया को बोल रहे हैं देख सकते हैं यहाँ काफी भीड़ हैं बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा और ये सब नदी पे मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं।

अलग हैं देख सकते हैं नहा रहे यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा हैं।

खाने में और दाल देख सकते है यहाँ चारों तरफ पिंक कलर का कारपेट बिछाया हुआ है देख सकते है देख सकते है।